छोटा सा मंडप दिख रहा है यहां पर दो खंभे दिख रहे हैं एक घर दिख रहा है घर का अच्छा हुआ कलर कलर पेंट किया गया नीचे चारपड़ी बिछाई गई है दिख रहा है।

यह छोटा सा शोरूम दिख रहा है यहां पर बहुत सारे लोग आ कर अपने शोरूम पे कपड़ा लेते हैं बाजू में ऑफिस दिख रही है साथ फोन की ऑफिस दिख रही और और दुकानों के बाहर--

ये किसी का पुराना सा घर दिख रहा है घर के आजू-बाजू कोई नहीं दिख रहा आजू-बाजू जंगल का इलाका दिख रहा आजू-बाजू घास उगी हुई दिख रहे जो ईंटा दिख रहे और लकड़ियां दिख रहे हैं।

बहुत पुराना दिख रहा है और आजू बाजू झाड़ा दिख रहे हैं छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं।

बहुत सारे कार हमे दिख रहे हैं और हाइवे का रोड की फोटो दिख रही है ये बहोत सारे दिख रहे बड़े बड़े बिल्डिंगे भी दिख रहे ये--

भी लगाया गया और बीच में पड़ा झाड़ भी दिख रहा कुछ कुर्सियां भी दिख रहे हैं और वो बच्चों के झूलने के लिए कार के बाद झूला दिख रहा --

ये एक्सिस बैंक का एक ए_टी_एम कार्ड दिखा रहा है बाजू में एक ए_टी_एम कार्ड भी दिख रहा है ए_टी_एम का बैंक दिखा रहा है यहाँ पर और सैडा सैडा में दुकान भी दिख रहा है।

भी दिख रहा है बाहर एक पोस्टर भी लगाया गया है अच्छा ख़ासा और अन्दर लाइटें भी चालू दिख रही हैं।

और सा और सामने पर्दा भी दिख रहा है और खिड़की में बहुत सारे मेडिकल दिख रहे हैं दवाइयां दिख रही हैं बॉटल में।

बहुत सारे काउंटर हैं पर कुछ डब्बे दिख रहे हैं और कुछ ग गंदा भी दिख रहा है।

और आजू बाजू घरां भी दिख रहे हैं बड़े बड़े से और कुछ लोग में ठहरे हुए भी दिख रहे।

और आदिवासी सिर्फ घास ही घास दिख रहे है बड़ा सा मैदान दिख रहा हैं यहां पर आप देख सकते है।

सोफा भी दिख रहा बैठे बैठने के लिए और ये रात का टाइम दिख रहा है।

बाइक दिख रहे है यहां पर आप देख सकते हैं बहोत सारा बाइक दिख रहे शोरूम दिख रहा है बाइक में--

पूरा आस पास बहोत सारे दुकान ये रात का टाइम हैं लाइटिंग भी दिख रही है और सामने कुछ लोगां ठहरे हुए--

एस_ बी_ आई_ की शायद बैंक दिख रही है यहाँ पर ये ए_ टी_ एम_ दिख रहा है ऊपर डबल माला दिख रहा है ऊपर कुछ लोग अ जा रहे हैं और ए एक आदमी आ रहा है।

बहुत सारे लोग नीचे जमा हुए हैं बहुत कुछ दिख रहा बड़ा सा।

डांस का कंपटीशन चल रहा है यहां पर शायद ये स्कूल का कंपटीशन चल रहा--

और अच्छा ख़ासा दिख रहा है पीछे खम्भा भी दिख रहा है सामने स्टेज पर बिछाया भी गया।

और बाजू में झाड़ दिख रहा है और झाड़ के बाजू झाड़ के नीचे एक वहां पे ।

मीठा तेलुगू खाना पकाने के लिए अ बच्चों के खाने के लिए सा बच्चों को खाने के लिए चाकलेट व सब कुछ मिलता--

आप देखते हैं सामने बहुत सारे आइटम रखे हुए हैं जैसेम जाप सब कुछ दिख रहा।

यहाँ पर किसी का फंक्शन चल रहा है यहाँ पर डेकोरेशन अच्छा खासा किया गया है लगता है शादी खाना दिख रहा है ये और अच्छा सा काम अनुसार डेकोरेशन किया गया है और ऊपर --

और खम्बे के बगैर भी दिख रहे अच्छे खासे और सामने कुछ बच्चे दिख रहे हैं सामने अच्छा दिख रहा डेकोरेशन अंदर जाने के लिए।

कुर्सी के ऊपर एक बॉक्स दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा है सिर्फ ये काउंटर कुर्सी बॉक्स दिख रहे।

कुर्सी में पर्दे चढ़ाए गए हैं पीले रंग के अच्छे खासे कोई टेबल दिख रहे हैं और सामने बोर्ड भी लगाया गया है ऊपर बोर्ड के ऊपर पर्दा भी छोड़ा गया है और टीचर सामने स्पीच दे रहा--

बड़े बड़े घरा दिख रहे हैं बाजू में एक कार भी दिख रही है व्हाईट अंदर।